और कई सारे टेंट भी लगाए हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

और ढेर सारे झंडे भी लगाए हुए हैं।

नीचे फूल भी लगाया हुआ है कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं।

मुझे इस तस्वीर के अंदर एक फैक्ट्री दिख रहा है।

और जिसके सामने ही डस्टबिन भी है और डस्टबिन के अंदर बहुत सारा कागज भी है।

बहुत सारा लाइट्स भी हैं और एक फोटो फ्रेम भी लगाया हुआ हैं।

दीवाल के शेल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।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

मुझे इस तस्वीर में रेस्टोरेंट दिख रहा है और--

ये टेबल के ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है।

दीवार में कई सारा फोटो फ्रेम भी लटकाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी भी है।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

और ढेर सारा शीशे भी लगाया हुआ है।

और कई सारे फूल के मालायां भी हैं।

और दरवाजा भी दिख रहा है और बेम्बु भी दिख रहा है।

और छोटे छोटे घास भी दिख रहा है और गाड़ी भी दिख रहा है।

और कई सारे पेड़ पौधे भी है।

दिवार के सेल में भी कई सारा सामान रखा हुआ है।

ढेर सारे पत्थर भी दिखाई--

और सीढ़ियां भी दिख रहा है और साइकिल भी दिख रहा है।

कई सारे लोग नाचते हुए भी दिख रहा है।

और सोना का चैन भी दिख रहा है।

और ढेर सारे बर्थडे भी--

पीछे ढेर सारे फूल भी लटकाए--

और बर्डे में भी कई सारे फूल लगाए हुए--

मुझे इस तस्वीर में एक स्केलेटन दिखाई दे रहा है।

और कैरट भिंडी और मिर्चा भी दिख रहा है।